है सामने में एक डेस्क है।

बत्तखे बैठी है कुछ आदमी--

कटोरी चम्मच में रखा हुआ भी है।

दो चम्मच में एक्स्ट्रा रखे हुए हैं।

यहां पर रेक पर पूजा का सामान रखा हुआ है।

सिंदूर के डब्बे दिखाई दे रहे हैं।

अंदर बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं।

यहां पर लाइट्स लगे हुए हैं।